यहाँ पे हमें एक ऐलीफेंट दिखाई दे रहा है।

अब पानी के फुव्वारे मारते दिखाई दे रहे हैं।

जो की अपना काम रहे है और उसमे एक एक दुकान भी लगा हुआ है।

जिसमे एक लड़का है जो की कार को ऊपर उठाये साफ कर रहा है और --

पटना प्रू मा प्रमंडल पटना --